पैसा विथड्रा करके ए.टी.एम. से बाहर आ रहा है।

जैसे ये एक नया अपार्टमेंट भी बन रहा है।

और यहाँ पे बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स दिखाई दे रहा हैं।

इस स्कूल में एक होर्डिंग भी दे रखा है।

जिसमें बहोत सुंदर सी डेकोरेशन की गई है।